चेयर का कलर रेड है।

तीन फ्लोर प्लाई से लगी हुई है।

गले में पहनने के लिए कुछ चीजे रखी हुई है।

इस फोटो में ट्रेन क्रॉसिंग दिखाई दे रही है।

वहां पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

एक सीढ़ी बनी हुई है जिस पर जिम लिखा हुआ है।

कुछ आदमी बस के पीछे खड़े हुए हैं।

कुछ कीबोर्ड रखे हुए हैं।